इस तस्वीर में एक बगीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक हेयर सैलून का दृश्य दिखाया गया है।

कार्यालय की दीवार में हिंदी में कार्यालय अधिशासी अभियंता लिखा हुआ है।

तालाब के बीच में छोटे छोटे टापू भी दिखाई दे रहे हैं।

तरह तरह के फल रखें हुए हैं जैसे कि संतरे केले अनार सेब इत्यादि।

सामने एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टो करते हुए दिखाई दे रही है।

सामने एक चट्टान भी दिखाई दे रही है जिसमें सूखी घास भी उगी हुई है।

सामने एक एक आदमी कोट पैंट पहने हुए भी खड़ा है।

तस्वीर में एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक ईंटों से बना हुआ घर दिखाई दे रहा है।

सामने एक खंभा भी दिखाई दे रहा है जिसमें लाइटें लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक दुकान के अंदरूनी हिस्से का दृश्य दिखाया गया है।

दुकान में कई सारे सोफे और गद्दे अलग अलग रंगों के दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक दुकान के बाहरी हिस्से का दृश्य दिखाया गया है।

तस्वीर में एक दुकान के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है।

सामने कुछ लोग खड़े और कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में कार्यालय के बाहरी हिस्से का दृश्य दिखाया गया है।